लड़कियाँ नीले कलर की ड्रेस पहने हुई हैं और लड़कियाँ खों-खों खेल रही हुई दिखाई दे रही हैं।

एक लड़की के बीच मे एक टीचर के साथ भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर को सीलिंग में बहुत सारे पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे स्टेज के नीला बैकग्राउंड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। सामने कुर्सी --

एक लड़का और लड़की बैठे हुए हैं तो एक टेबल पर बच्ची और उसकी मां बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। और उसके अभी की दीवाल --

फूल दिखाई दे रहे हैं उसमें कुछ गेंदे के फूल है कुछ मोगरे के कुछ लाल फूल है कुछ बैंगनी फूल भी दिखाई दे रहे हैं जिसमे एक टोकरी में पीले गेंदे के फूल हैं जो एक में ऑरेंज है।

गेंदे के फूल हैं तो कुछ लाल वाले गेंदे के फूल हैं। कुछ गुलाब के फूल भी दिखाई दे रहे हैं और पीछे एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर डीपी रखी हुई दिखाई दे --

सारे पेड़ पौधे लगे हुऐ हैं उसके सामने छोटी सी टंगी हुई दिखाई दे रही है। रोड के सामने एक व्हाइट कलर का चर्च दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक लोगो लगा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाजु में बिजली का खम्भा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक हेयर सैलून दिखाई दे रहा है जहां पे दो लाल कलर की कुर्सियाँ रंगी हुई दिखाई दे रही हैं। एक कुर्सी खाली है एक कुर्सी पे एक व्यक्ति नीले कलर का कपड़ा ओढ़े हुए बैठा है जिसके --

वजन करने के लिए तराजू भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लेडिज फोन पर बात करती हुई दिखाई दे रही है मछलियां नीचे नीले पर्दे पर रखी दिखाई दे रही --